फॉर्च्यून सोया बीन तेल है आटे की बोरी है चावल की बोरी भी रखी हुई है।

जिसमें कई प्रकार की की भोजन सामग्रियां है।

दूसरी शर्ट हल्की नीली व सदरी हल्की अधिक नीली है जिस पर सुनहरे बटन लगे हैं।

इसमें लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं।

पहले सीट पर बैठी एक लाल ड्रेस पहनी हुई लड़की आर्ट बना रही है।

यहाँ कोई पार्क है पार्क में बहुत बड़ा घास का मैदान है।

पार्क में एक बहुत सुंदर सा गुंबद भी बना हुआ है पार्क के इधर रास्ता भी बना हुआ है।

कई लोग चल रहे हैं एक ठलिया भी खड़ी हुई है।

ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ है ऑटो के बाहर कुर्सी पर और एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और लाल रंग की बच्चों की कार खड़ी हुई है कार के पास एक लड़का और लड़की भी खड़े हैं।

से फ़ौहारे निकल रहे हैं।

फर्श पर लाल कालीन बिछी हुई है कालीन पर दो लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं।

व्यायाम कर रहे हैं उसकी छत पर एक पंख लगा हुआ है।

कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन है बाहर कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं।

छत के ऊपर तीन टंकियां रखी हुई है।

एक रस्सी बंधी हुई है जिस पर कपड़े फैले हुए हैं।

बाहर बहोत बड़ा घास का मैदान है उसमें कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

कुर्सियों पर बैठकर कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं।

थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं सीढ़ियों के पास एक अग्नि नाशक यंत्र रखा हुआ है।

यह कोई पौधशाला है इसमें बहोत छोटे छोटे से पौधे रखे हुए हैं।